पेड़ की जो टहनियां है पानी में लटकी हुई है।

आसमान दिखाई दे रहा है पानी का कलर ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है।

और एक पहिया दिख रहा है।

बहुत सारे घर दिख रहे हैं घर के सामने गार्डन है गार्डन में दो बेंच है और मयूर पंख का पेड़ दिख रहा है गार्डन में एक सड़क दिखाई दे रही है उस पर --

और नदी के किनारे भी बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं पत्थर बड़ा-बड़ा दिख रहा है और पेड़ दिख रहा है नदी में भी।

कुर्सी भी दिखाई दे रही है।

सड़क है सड़क पर दो बस है एक बस का गेट खुला हुआ है पेड़ दिखाई दे रहा आसमान दिख रहा है और।

और पार्क सड़क के उस पार ।

एक सड़क दिखाई दे रहा है सड़क के एक तरफ ग्रिल बनी हुई है और सड़क के उस पार।

उसके नीचे एक मकानी कुछ लग रहा है बना रहा है गाड़ी को और पंखा है लाइटें जल रही है।

पीड़ भी दिखाई दे रहा है।

और फील्ड भी दिख रही है इसमें हरी-हरी घांसी दिख रही है।

पहाड़ दिख रहा हैं आसमान दिख रहा हैं और पहाड़ पर हरी हरी घासें दिखाई दे रहीं हैं पेड़ भी दिख रहा हैं।

कलर कुछ ब्लॅक एंड व्हाइट कर दिया गया कलरफूल में हैं।

और पानी का कलर ब्लैक एंड वाइट कर दिया गया है।

यह समुद्र दिखाई दे रहा है समुद्र में बहुत बड़े-बड़े।

और पंखा भी दिख रहा है वह महिला नृत्य करती हुई दिखाई दे रही है।

यह क्लब है क्लब में चार लड़कियां डांस करते हुए दिख रही हैं एक बीच में एक छोटा लड़का खड़ा है और एक औरत के पीछे एक आदमी दिख रहा है।

ये फ्रूट की दुकान है अ दुकान का कलर और बहुत सारे कार्टून का और फलों का जो कलर है ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया गया है दो दो --

इस तस्वीर में एक समुद्र दिख रहा है और तीन जहाज दिख रहा है पानी वाला दो जहाज पास में है पानी में उसकी परछाई।

ये एक एच_डी_एफ_सी बैंक है जो कि शटर लगा हुआ है कांच का दरवाजा लगा हुआ है पोस्टर पर लिखकर लगाया गया है एच_डी_एफ_सी बैंक लाइट वाला खंबा।

दीवार पर एक पेंटिंग बनाई गई है दो लोग आसन प्रयोग कर रहे हैं तीन दरवाजा दिख रहा है एक खिड़की दिख रही है।

जो दूरी पर कुर्सी पर बैठा हुआ है एक बॉटल दिख रहा है बैग दिख रहा है आसमान दिख रहा है।

यह टेंट का तंबू है जो कि ऊपर का कलर ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया गया है जो कि सफेद रंग का है आकाश भी सफेद रंग का दिख रहा है।

चियां भी हैं और स्कूटी भी दिख रही है पेड़ भी दिख रहा है थोड़ा-थोड़ा।

एक बस दिख रहा हैं ब बस जो की गेंदे के फूल से सजा हुआ हैं कांच के हम्म अंदर से हह का बस के अंदर घुमड रखा हुआ है जो की बाहर से दिख रहा हैं और एक आदमी सड़क --

पेड़ दिख रहा हैं कांच दिख रहा हैं तार दिख रहा हैं बगल में एक और बस दिख रहा हैं थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा हैं किच्छा सा --

डोलची दिख रहे हैं डोलची के ऊपर अ ठसला बहुत सारा रखा गया हैं और एक आदमी का थोडासा हाथ एक --